इस पिक्चर में एक आ- ईमारत दिख रही है जिसमें वाइट कलर का पेंट है। नीचे कुछ दो शॉप दिख रही है।

कुछ चेयर रखी हुई हैं। वह ब्लैक कलर की है और कुछ कैलेंडर टंगे हुए दिख रहे हैं। कुछ एम.एन.ए. अ बॉक्स रखे हुए --

पिक्चर में एक अ- आ- घर दिख रहे हैं जहाँ पर गैलेरी दिख रही हैं। गैलेरी में क्रीमी कलर का पेंट है।

इस पिक्चर में एक स्काइ ब्लू कलर का आसमान दिख रहा है। ट्रैन की पटलिया दिख रहीं हैं।